एक पेपर में रखी हुई हैं। कुछ गुच्छेदार जामुने रखी हुई हैं। लाल बक्से में रखी हुई हैं।

पेपर से लिपटी हुई करिया जामुने रखी हुई हैं।

एसबीआई काउंटर दिखाई दे रहा है। सामने एसबीआई का बोर्ड लगा हुआ है। ऊपर --

सारे पौधे एक साथ रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ गेंदे के पौधे दिखाई दे रहे हैं। कुछ शो पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं।

एक टी रूम है। इसमें एक ट्यूबलाइट दिखाई दे रही है। बॉक्स में दो ताले दिखाई दे रहे हैं। ताले --